यह एक चित्र है चित्र के अंदर--

मच्छी रखी हुई हैं और कुछ लोग भी हैं जो मच्छी वगैरह खरीद रहे हैं।

बहुत से लोग दिखाए गए हैं और बहुत से पेड़ भी लगे हुए हैं।

इसमें कुछ लोग भी खड़े हुए हैं और इसमें कुछ--

चित्र में कुछ पीछे दिख रहा है।

और यहाँ एक कुर्सी भी रखी हुई है।

यह एक चित्र है चित्र में कुछ सामन दिखाए जा रहे हैं।

यह एक चित्र है चित्र में एक बहुत बड़ा घर है और इसमें गमले भी रखे हुए हैं और एक बहुत बड़ा तोप भी है।

और इसमें छोटे-छोटे फ्लावर पॉट भी रखे हुए हैं।

यह एक फोटो है फोटो में कुछ लोग दिखाए जा रहे हैं जो गोल्फ खेल रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा सा गेट है गेट के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

और पीछे परदे भी लगे हुए है।

लोहे के सामान रखे हुए हैं और कुछ --

यह एक बहुत बड़ा घर है घर के साइड में--

कुछ अच्छी गाड़िएं भी खड़ी हुई हैं औ कुछ बेकार गाड़िएं भी खड़ी हुई हैं।

नदी दिखाई दे रही है और इसके पास में एक फिसलपट्टी भी दिखाई दे रही है।

और इनके आस पास बहोत बड़े बड़े से घर भी दिखाई दे रहे--

कुछ एक्टिवाएं भी खड़ी हुई हैं और कुछ बाइक भी खड़ी हुई हैं।

और इसके नीचे जो घास है वो भी पूरी सूख चुकी है।

यह एक गुरुद्वारा है गुरुद्वारे के अंदर कुछ लोग--

पेड़ भी लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक फोटो है फोटो के अंदर कुछ लोग दिखाए जा रहे हैं जो अपने--

और इधर बहोत से पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है और कुछ घास भी लगी हुई है।

गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है और--

और यहाँ बहुत बड़े-बड़े घर भी दिखाई दे रहे हैं।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

कर रहे हैं और कुछ लोग पैर पकड़ रहे हैं।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

ऐसी जगह है जिसके बाहर बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं और अंदर भी बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

और ये इधर पर बहुत से बड़े-बड़े छोटे-छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे बहुत हरियाली भी है यहाँ बहुत पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

और यहाँ कुछ कार वगैरह भी खड़ी हुई हैं और कुछ एक्टिवा वगैरह भी खड़ी हुई हैं।